ये एक रूम हैं इसमें एक टेबल दिखाई दे रहा है एक गेट दिखाई दे रहा है एक वायफाय दिखाई दे रहा है।

शीशे लगे हुए है एक टी_वी दिख रहा है एक सेटपबाक्स दिख रहा है एक ए_सी दिख रहा है।

प्लास्टिक अह प्लास्टिक पर्दा दिखाई दे रहा है सैलून के बाहर ए_सी सैलून लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है इसमें टी_वी दिख रहा है। एक ऑफर बुक स्टॉल दिख रहा है दो खिड़की दिख रहे हैं।